अ सड़क पे सारा पानी पानी दिखाई दे रहा है इसका मतलब है यहां बारिश हुई हो--

इस पिक्चर में हमें दो काउंटर दिखाई दे रहे हैं जो बड़ा काउंटर है इस पे दो चेयर्स लगी हुई हैं और जो छोटा काउंटर है उसपे एक चेयर लगी--

इसका एक मेन गेट लगा हुआ है जो कि लोहे का है और बहोत कलरफुल पेंट से इसको पेंट कर रखा है।

ये तनिष्क का प्रोडक्ट अह तनिष्क का पार्टनरशिप है।

यह दृश्य एक शॉपिंग कंपलेक्स का है जिसमें सामने बेकर की शॉप है।

इस पिक्चर में हमें सामने बहुत सारी बिल्डिंग्स दिखाई दे रही है।

इसका नाम है रोहन चाय सेंटर यहां पे चाय और कॉफी --

जैसे की बिस्किट रस और सामने कुछ पैकेट भी टंगे हुए है मेरेको दिखाई दे रहे है।

ये शायद किसी अच्छे होटल के खाने की फोटो है या किसी के घर की भी हो सकती है।

टेबल सब सेम है हर टेबल पे सॉस और मेन्यू कुछ प्लेट्स पानी ये सब रखा है।

और उनका चढ़ावा हो और एक पीछे उनके बच्चा खड़ा है जिसने दूल्हे जैसी पगड़ी पहनी हुई है ये दूल्हे का भाई भतीजा या भांजा हो सकता है।

पी_आर_यू_एल_ई_ई के नाम से कैफे दिखाई दे रहे हैं जिसमें कुछ आगे काउंटर बना हुआ है एक लाल रंग काउंटर है जिसके पीछे मैनेजर खड़ा है।

और सामने स अ ट्रांसपेरेंट सीसे के काउंटर लगे बने हुए जिसमे कुछ बेकरी आइटम्स हमारे को दिखाई दे रही है।